दो बड़ी सी छतरी है जो पीली कलर से नीली कलर की है और कुछ पैकेट्स रखे हुए है।

एक जगह पे बहुत सारे लोग बैठे हुए है।

ये उसमे पीले कलर के सफ़ेद कलर के फिरोज़ी कलर के है कुछ लो ओ --

है इसमें कई सारे खंभे हैं इसके आइड साइड हरे कलर के पेड़ हैं मंदिर का गेट लाल कलर र र का पुता हुआ है आधा और सीढ़ी है जो भी ओ लाल कलर से --

कालीमा की इ इ इ मूरत है। ए ए उन्होंने लाल कलर की चुन्नी ओढ़ रखी है। जीभ बाहर निकल रखी है।

यहां आ दो आदमी खड़े है टंकी के पास इनमे है --